ये सिल्वर कलर का नल है बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि न्यू है अभी भी बनाया गया--

यह एक शॉफ है मेडिकल शॉप जिस पे--

एक वहां पे स्ट्रक्चर भी बना हुआ दो--

और ये रेड कलर येलो कलर पिंक कलर --